कोई लेडीस दिखाई दे रही है इस इमेज मे पोस्टर लगा दिखाई दे रहा है इस इमेज मे बस खडी दिखाई --

इस इमेज मे बस के एक कांच दिखाई दे रहे है इस इमेज मे एक लड़का खड़ा दिखाई दे रया है।

इस इमेज मे बहुत से बादल दिखाई दे रहो है इस इमेज मे बहुत सी पानी भरा दिखाई दे रहा है।